पास ही कुछ हरे वृक्ष दिखाई दे रहे है यह दृश्य बहुत ही सुंदर तथा मनमोहक है।

पास में एक मटका रखा हुआ है दीवारों पर फूल सजे हुए हैं सामने चेयर्स रखी हुई हैं।

इस चित्र में हमें एक दुकान के सामने का दृश्य दिखाई दे रहा है।

इस गाड़ी पर लिखा हुआ है श्री साईं डी_जे ।

इस चित्र में हमें एक घर नजर आ रहा है।

इस चित्र में हमें एक शहरी दृश्य दिखाई दे रहा है। यह छत से लिया गया दृश्य है।

बोर्ड पर हाथी का एक लोगो बना हुआ है।

यहां पर हमें बहोत सारे एक्वेरियम रखे हुए नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में हमें एक उद्यान नजर आ रहा है।

यह चित्र एक विद्यालय के कमरे का है।

दो व्यक्ति सफेद कलर के कपड़े पहने हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में हमें दो दुकान नजर आ रही है।

इस चित्र में हमें एक क्रिकेट ग्राउंड नजर आ रहा है।

यहां पर तीन खिलाड़ी खेलते हुए नजर आ रहे हैं।

बहोत सारे लोग नजर आ रहे हैं डेकोरेशन बहोत ही सुंदर है।

यह चित्र एक मेले का है।

इस चित्र में हमें एक मैदान नजर आ रहा है।

इस चित्र में हमें एक सुंदर मोर नजर आ रहा है।